और हँ घर में शायद कोई नहीं है।

और यहाँ पे हम काफी --

यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान जी की मूर्तियाँ सजा रखी हैं।

छठ पूजा मनाने के लिये यहाँ पे हैं काफी सारी औरते हैं।

और समुद्र के बीचों बीच तो ये और भी ज्यादा सुन्दर लग रही है।

इसमें येलो और पिंक फ्लावर का यूज हो रखा है।

और सभी बहुत कलरफुल दिख रहे हैं।

यह नाई की दुकान है जहाँ पे --

दूकान की और यहाँ पे दो चेयर है।

और बन्दे ने काफ़ी मेहनत की है।

जैसे कि हमें पिक्चर में दिख ही रहा है।

और बाइक भी दिख रही है।

सिस्टमेंटिक वे में रखी हुई है।

और जीसस का स्मरण कर रहे हैं।

जहाँ पे यह देख रहे हैं।

और ऊपर पे एयरटेल फोर जी भी लिखा हुआ है।